और कुछ कपें भी यहां पे सरिया कर रखी हुए हैं।

और साथ ही साथ पेफोन का लोगो भी रखा हुआ है।

इसके दीवार पे बहुत सारी नकाशे की हुई है।

और एक वेटर इन्हें सर्व कर रहा है।

एक तस्वीर किसी बिल्डिंग के ऊपर से लिया गया है।

येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पे सड़क पर एक --

यह एक किसी के बागान का बगीचा दिख रहा है जो कि फूलों का है।

यह एक डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल का है।

इसके इसको चारों तरफ से घेरा गया।

लोहे की सलाखें लगी हुई है साथ ही साथ--

जहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार--

बोर्डिंग कैनाल रोड सभी जगह की अलग-अलग--

जो कि सड़क के किनारे है साथ ही साथ--

ये किसी घाट की तस्वीर दिख रहा है।

साथ ही साथ इस इमेज में एक बच्चा भी दिख रहा है।

ठंडा पानी रखने के लिए यहां पे दो गैलन भी दिख रहे हैं।

गाड़ियां लगी हुई है सिलेंडर और कुछ यहां पे वर्कर भी दिख रहे हैं।

यह एक बेडरूम यह एक बेडरूम का तस्वीर दिख रहा है।

जिसमें एक हेलमेट भी टांगा हुआ है जो कि रेड कलर का है।

साथ ही साथ एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा है।

इसपे केले चढ़े हुए हैं सेब चढ़े हुए हैं और काफी --

इसकी सुंदरता और बढ़ रही है।

यह एक स्टेशनड़ी का दुकान दिख रा --

काफी साड़ी पेंसिल कलम--

साथ ही इसका एक अलग अलग बॉक्स बनाकर रखा हुआ है।

जहां पे विभिन्न प्रकार की दवाइयां रखी हुई है।